इस फोटो मे हमे बहुत सारी गाय दिख रही है जो इधर उधर घूम रही है एवंम कुछ पेड़ भी दिख रहे है एक मकान भी दिख रहा है।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

ये फोटो एक बहुत बड़ी नदी के दिन की फोटो है जिसमे एक बहुत लंबा ब्रिज है इसमे बहुत सारे खंबे है इस ब्रिज मे--

ये फोटो जिल्हा अधिकारी कार्यालय नागपूर की की कार्यालय की है बाहर की है।

इसके बाहर दो बड़े बड़े पेड़ है कुछ आदमी भी है एवंम एक कार जा रही है।

ये फोटो एक सड़क कि है जो किसी जंगल के बीच मे से निकली हुई है एवम इस जंगल मे बहु सारे पेड़ है।

ये फोटो एक खेत की है जिसमे फसल लगी हुई है जो हरे कलर की है एवम इसके आस पास बड़े बड़े पेड़ भी है।

ये फोटो एक पार्क की है एवंम इस पार्क के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हुए है इसके चरो तरफ पेड़ लगे हुए है इवम इसके बहर सड़क पर दो कार खड़ी हुई है।